कुछ अंदर लगी हुई है यह कपड़े की दुकान है एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बंधी हुई है यहाँ पर कई सारे बलून्स लगाए गए हुए है कुछ लड़ियाँ लगाई गई है फूल की ऊपर यहां कुछ बाइक रखी हुई हैं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे।

यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है यहाँ एक पहाड़ी दिखाई दे रही हुई है यहाँ कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ झाड़ियाँ नीचे पड़ी हुई हैं।

कुछ पेड़्स पौधे इस साइड दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं दूर-दूर तक दिखाई दे रहे हुए हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है और यहाँ पे दूर को एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है एक बड़ा सा पड़े दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई हैं यहाँ अक्षरों में कुछ लिखा रहा हैं और एक खिड़की दिखाई दे रही हैं एक कांच की खिड़की ऊपर दिखाई दे रही हैं और कई सारी खिड़कियाँ ऊपर हैं एक लाइट का मीटर लगा हुआ हैं।

कुछ कपडे रखे हुए है अंदर ऊपर कई सारे लाइटे लगी हुए है कुछ बाइक रखी हुए हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ है ऊपर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है।

कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है दूर दूर और कुछ पेड़ बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर ऊपर कुछ पानी की बॉटल रखी हुई है कुछ नीचे पानी की बॉटल रखी हुई हैं।